एक ये एक मैरिज इवेंट है जहां के लोग--

इस फोटो को हम ये देख रहे है।

फ्लावर से कप से स्माइलिंग वाला कप से और--

दुकान भी लगी हुई थी जहां पे पानी कुरकुरे सब चीजें मिलती है।

इस फोटो को देखकर ये पता चल रहा है कि--

येह पता चल रहा है कि ये एक कंप्यूटर दुकान का फोटो है।

हर तरह की जैसे कई जॉब की अप्लाइंग आपको--

इस फोटो को देखकर हमें ये पता चल रहा है कि--

और एक ऊपर कुछ लगा रहे हैं और गाड़ी एकदम कवर कवरिंग किया कियाया है।

उनका एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं उम्म-उम्म कुछ लोग डाइट मेंटेन करना चाहते सब कुछ करवा --

और टी_वी में उम्म क्रिकेट चल रहा है और कुछ लोग बैठ के--

हमें ये पता चलता है कि--

लगाई हुई है और अ बीच में एक फ्लावर्स अच्छे से डिजाइन करके--

पैट्रोल ऑयल इंडियन पैट्रोल ऑयल का ये --

जिसके बाहर और उसके बगल में भी एक दुकान है यहां पे आपको--

लोग खड़े होकर मेजरमेंट कर रहे और दूसरी साइड दो तीन लोग मिलकर काम करने के लिए--

ये पता चल रही है की--

पोस्ट ऑफिस है जहां की बाहर लिखी गई है।

पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस मुझे बाहर बहोत गाड़ी रखी हुई है और यहां पे--

एयरटेल सिम दुकान है जहां पे एयरटेल --

इस फोटो को देखकर ये पता चल रही है--